यहां एक सूर्य डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

एक औरत ने रेड कलर का सूट पहना हुआ है।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

यहाँ एक पेड़ा भंडार भी लिखा हुआ है।

ऊपर मे दी सिटी भी दिखाई पड़ दिखाई पड़ रहा है।

टेबल का रंग व्हाइट तथा ब्लैक हैं और कुर्सी का रंग काथा कलर का है।

यह एक जंगल का दृश्य है जहां बहुत से पत्थल दिखाई पड़ रहे है।

उसमें से एक बाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

अन्य प्रकार के वस्तुएं रखे गए हैं कई वास्तु के सामने हरा कलर के बोतल में भी कुछ सामान भी रखे गए हैं।

एक बच्चे ने व्हाइट कलर का शर्ट का ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए हैं।

और एक बच्चे ने रेड कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का हाफ पैंट पहने हुए हैं।

बगल में पीले रंग का कुछ सामान रखे हुए हैं।

एक महिला एक आदमी के बाल काटता हुआ दिखाई पड रहा है है।

उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें राष्ट्रा भारती पब्लिक स्कूल लिखा गया है जो रेड कलर से लिखा गया है।

यहां पर एक पटरी भी दिखाई पड़ रही है जहां पर बहुत सारे आदमीया भी बैठे हैं।

यह एक बस का दृश्य है जो पीले रंग का है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है जहां पर एक महिला और एक पुरुष दिखाई पड़ रहा है।

और एक आदमी व्हाइट कलर का भी जूता पहना हुआ है।

कुछ कुच्ची भी दिखाई पड़ रही है जो वाइट कलर का है।

कुछ वैसे एक हरा कलर का चटाई बिछाया गया है।

यह एक ट्रक का दृश्य है जो व्हाइट कलर का है उसके बगल में दो पीले रंग के टावर है।

नीचे गिरने के बाद पानी का कलर काठे टाइप में थोड़ा दिखाई पड़ रहे हैं।

एक पीला का कैप भी पहना है और पैर में चप्पल पहने हुए हैं।

घर के ठीक सामने कई फूल के पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

आदमी के ठीक सामने रेड कलर से कुछ नंबर लिखे गए हैं।